पास में एक रोड नजर आ रही है जो कि पूरी की पूरी खाली है उसके बगल में ग्राउंड नजर आ रहा है जो कि पूरे मिट्टी की कलर की है।

आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

एक महिला और एक पुरुष सामने एक व्यक्ति साइकिल चला रहा--

तस्वीर में नजर आ रहा है की आस पास बहुत सारे बल्ब लगाए गए हैं।

देख सकते हैं कि इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि आसपास बहुत सारे घर हैं।

आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं पास में काम का पेड़ है सबके यहां लाइट जल रहा है।

उसके बगल में एक शेषनाग को बनाया गया है जो कि येलो कलर का नजर आ रहा है।

पास में एक व्यक्ति खड़ा है जिसने टी शर्ट पहना हुआ है और नीचे ट्राउजर पहना हुआ है ब्लैक कलर का पास में बहुत सारे पेड़ पौधे हरे भरे नजर आ रहे हैं।

जो जिसका कलर उजला है उसके टायर ब्लैक कलर के हैं।

बगल में एक सीधा रॉड जैसा रखा हुआ है।

और उसके जस्ट सामने पोस्टर में ब्लू कलर का पेंटिंग बनाया--

और लैपटॉप का भी कलर ब्लैक है प्रिंटिंग मशीन का भी कलर ब्लैक है।

और इसके बगल में छोटे छोटे पौधे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं आसपास बहुत सारी चीजें नजर आ रही है।

किसी ने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है किसी ने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हु--

देख सकते हैं कि इस चित्र में बहोत सारी लकड़ियां नजर आ रही है जो की आधी आधी कटी हुई है।

और बहुत सारे पेड़ जो कि हरे भरे हैं कुछ कुछ छोटी छोटी डालियां हैं और कुछ कुछ छोटे छोटे पौधे हैं।

इसमें जो पानी गुजर रहा है वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा--

पास में दो तीन बल्ब लगाई गई है जो की वाइट कलर की है पास में बैडमिंटन बैट बॉल ये सब टांगा हुआ है।

दो बोट है जो जिसपे सभी लोग भरे पड़े हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

आसपास बहुत सारा पानी नजर आ रहा है जोकि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

पास में तीन कमल के फूल हैं जिनकी कलियां ग्रीन ग्रीन कलर की नजर आ रही हैं।

ये जो कि घर है वह टाइल्स का बनाया हुआ है ऊपर में घड़ी नजर आ रही है।

ब्लैक कलर का है उसका टायर भी ब्लैक कलर का हैं।

और थोड़े दूर पर एक वाइट कलर का पेपर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

और बाकी जो प्याज लहसुन है वो सूती के बोड़े में रखे गए हैं।

देख सकते हैं कि एक शादी का डेकोरेशन किया गया है जोकि बहुत ही अलग अलग कलर के फूल से किया गया है सब फूलों का कलर अलग अलग है जैसे की रेड येलो ग्रीन ऑरेंज ।

नीचे में जो फर्श है वो गंदा है बगल में ग्रीन कलर की चेयर लगाई गई हैं।

जो कंप्यूटर रखा गया है वो सब एक लकड़ी के सामान बनाए गए हैं जिस पे कंप्यूटर रखा गया है।